सामने हैप्पी न्यू ईयर वाले बैलून टंगे हुए हैं।

मे सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

यहां पर बहोत सारे लोग नहाते हुए नजर आ रहे हैं।

पीछे एक मेट्रो की फ्लाईओवर भी दिख रही है।

जमीन पर बहोत सारी हरी हरी घास दिख रही है।

आगे एक ट्रांसफार्मर भी नजर आ रहा है।

यहां पर कंप्यूटर चेयर्स भी रखे हुए हैं।

यह चित्र एक रेस्टोरेंट के अंदर का है।

सीलिंग पर बहुत सारी लाइटे लगी हुई है।

सामने एक एल_सी_डी स्क्रीन लगा हुआ है।

चित्र में बहोत सारी लड़कियां दिख रही है जिन्होंने सफेद और रेड कलर का वस्त्र पहना हुआ है।

यहां पर सामने एक एस्केलेटर दिख रहा है।

इस चित्र में सामने एक सफेद कलर का हॉस्पिटल दिख रहा है जिसके बोर्ड पर नीरा हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

सामने की ओर सूरज ढलता हुआ दिख रहा है।

यहां पर बहोत सारे पेड़ और पौधे नजर आ रहे हैं।

अंदर एक ग्राउंड दिख रहा है यहां पर वॉलीबॉल खेलने के लिए नेट लगा हुआ है।

सामने एक लाइव बॉय का सैनिटाइजर दिख रहा है।

सामने बोर्ड पर मम्मी डैडी लिखा हुआ है।

चित्र में सामने एक शेड दिख रहा है।

रेड और वाइट कलर के हार्ट शेप बलून भी दिख रहे हैं।

प्लेट में एक नींबू का टुकड़ा भी रखा हुआ है।

चित्र में दो आर्टिफिशियल तलाब दिख रहे हैं।

सामने की ओर एक शेड जैसा कुछ बना हुआ है जिस पर करकट लगे हुए हैं।